और ग्रॉस स्टोर में ढेरों सारे सामान भी हैं।

यह दृश्य एक शोरूम का है और शोरूम का नाम है यामाहा ।

यह दृश्य एक कंस्ट्रक्शन साइट का है जिसमें लोगों की --

ब्रह्म चारी इंटर म-महाविद्यालय --

शाम के समय सूरज कितना सुंदर लगता है और उसकी लालिमा शाम के समय कितनी सुंदर लगती है।

कर रखे हैं और ये और ये योगा कर रहे हैं।

यह दृश्य एक ट्यूशन क्लासेस का है जिस क्लासेस का नाम है डेवलपमेंट ऑफ़ मैथमेटिक्स ।

इस गाड़ी के सर्विस की जा रही है।